और इस दुकान की जो छत है वह व्हाइट कलर की है इस दुकान के अंदर कैमरा भी लगा हुआ है इसमें फ्रिज भी रखा हुआ है।

देख सकते हैयहां पर हमे एक कार नजर आ रही है जिसका दरवाजा खुला हुआ है और यहां पर दो आदमी इस कार को धो रहे है और इनमें से और यहां पे सफेद बाल्टी में पानी लेकर---